और नीचे कुछ समान भी डला हुआ है | दूर कुछ मकान भी बने हुए हैं | कुछ बाइकस भी खड़ी हुई है और कुछ लोग वहाँ पे देख भी रहे --